और इसके पीछे मकान भी बने हुए है और यहां पे मकान बने हुए उसके अंदर चैयर है।

और यहाँ पर सोफा भी है और फेन भी लगा हुआ है बल्ब भी लगा है।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है की यह एक टेक्नॉलजी प्राइवेट आई.टी.आई. है।

हम्म और कुछ व्यक्ति दुकान के अंदर हैं।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि यह मूर्ति भगवान कृष्ण और राधा की है।